बोहोत सारे आदमी यहां पर --

यह सड़क के ऊपर बहुत ही बड़ी पुल बनाई गई है । इस पुल पर भी गाड़ियाँ चल रही है ।

एवं यहां पर बहोत तरह-तरह के झुलवे भी लगे गए है यहां पर बहोत से छोटी-बड़ी दुकाने है ये दुकानों में --

एक हॉस्पिटल है यह हॉस्पिटल बहोत ही बड़ी है यह हॉस्पिटल तीन मंजिले की है यह हॉस्पिटल में बहोत ही सुन्दर कलर से पेंट किया गया है यह हॉस्पिटल में बहोत सारे डॉक्टर रहते है यह --